यह किसी फूड होटल या रेस्टोरेंट कि पिक्चर है जहां पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी हैं।

यह एक ग्राउंड की फोटो है जहाँ पर पास में एक स्कूल कुछ बन रहा है।